ट्रेक्टर के बगल में एक आर्मी वाला खड़ा हुआ है और इसके बगल मे दस-पंद्रह लेडिस भी हैं | उसके बगल में एक बिल्डिंग है और पेड़-पौधे भी हैं ।

वहाँ पर फोटो दिखा रहा है एक लड़का बिच में दबा हुआ है।

ये हॉस्पिटल लग रहा है या फिर कोई बैंक है| तो यहाँ पर एक आदमी है और तीन कुर्सियाँ है।